यहाँ पे एक रोड है यहाँ पे टेंपू चल रहा है बाइक चल रहा है बाइक पे एक रेड की टीशर्ट का आदमी पीछे बैठा हुआ है टेंपू में भी सवारी सब बैठा हुआ है एक बाइक वाला ये फोटो खींचा हुआ है।

पोस्टर पे और रेड कलर का फोटो दिया हुआ है यहाँ पर नंबर भी है और कुछ कुछ लिखा हुआ है खेलकूद कुछ कुछ लिखा हुआ है और बगल में टेंपू लगा हुआ है।

और भी कुछ नाव हैं कि यहां पे कवर ववर लटकाया गया है और इसके अंदर आपलोग भी जाइएगा तो मिल जाएगा बगल में और भी दुकान हैं जहां पे कुछ मिलता होगा हरिओम कुछ लिखा हुआ है।

और भी बहुत लोग काम कर रहे होंगे इनका लंच भी होता होगा और क्या पता लंच ही टाइम हो इसके बाद ये आराम कर रहे होंगे और भी बहुत कुछ हो सक --

मेरे भी गांव में मिलता है और एक आदमी पकड़ा हुआ है और इसमें से मारेगा खाएगा पकाएगा।

जो भी करेगा तल के खाएगा तो बहुत मजा आएगा और हल्दी वलदी डाल के ये लोग खा जाएगा।

और भी मछली पकड़ सकता है ये लोग पकड़ रखा होगा उसमें लोड कर रहा होगा ये सब और भी पकरेगा --

यहां एक बहुत ही शांति माहौल है यहां पे एक बाइक लगा हुआ है एक पेड़ है इधर साइड भी इधर साइड भी और रोड है।

ये बहुत ही अच्छा टेंपल है जहाँ पर ऊपर ऊपर गाछी उछि लगा हुआ है टाइल्स वेल्स का बना हुआ है बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है ये एक है महिला है --

रोड बहुत ही अच्छा बनाया गया है मिट्टी का ही है लेकिन बहुत अच्छा है साइड में ग्रास व्रास है बहुत ही अच्छा लाइट लगाया हुआ है ऊपर पे --

पुल बहोत ही गंदा लग रहा है काहे कि सफाई करवाना चाहिए अ प्रधानमंत्री को और पुल घिरा हुआ है काहे की कोई भी बंदा आके गिर न जाए।